सामने एक चित्र दर्शाया गया है यहाँ एक इंडियन ऑयल है।

और विद्यालय में राष्ट्रीय गान हो रहा है।

समुन्दर में शाम हो रही है। यहाँ पर हरी हरी घास है। यहाँ पे सूरज ढलने लग रहा है।